सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें नीचे यहां पर बोड़े बीछे हुए हैं और पैकेट्स में कई तरह की सब्जियां रखी हुई है यहां पर भाजी और धनिया खुला हुआ दिख रहा है कुछ --

पीलर के ऊपर सिल्वल कलर की प्लास्टिक लपेटी गई है। नीचे कार्पेट बिछा है दो कलर का एक लाल रंग का एक हरे रंग का। उसके आगे--

अम ग्रीन कलर के और ये जो उनके और एक व्यक्ति उनके पिंजरे के बहार खड़ा हुआ है जाली लगी हुई है वहाँ पर पौधे भी लगे है बड़े-बड़े पेड़ लगे है।

ये बाइक को शायद सुधर रहा है और एक व्यक्ति बैठा हुआ है नीचे और अंदर हमें सामने गैरेज दिख रहा है जो लोहे की चादरों से बना हुआ है टीन की और उसके ऊपर नीली शीट लगी हुई है और ऊपर एक बल्ब लगा --

स्टेशनरी का फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कपबोर्ड बने हुए है कई सरे शेल्फ़ है अलग-अलग और पार्टीशन किया हुआ है।

उसमें उसकी चप्पू है और नाव चला रहा है आगे वाले व्यक्ति ने टी-शर्ट पहनी हुई है धारीदार और नाव के बीच में कुछ समान रखा हुआ है और यहाँ पानी का रंग नीला-नीला दिख रहा है हमें पत्थर दिख रहें हैं पानी --

चित्र मे हमे एक स्टेज दिखाई दे रहा है। उस स्टेज पर हरे रंग का कार्पेट बीछा हुआ है और स्टेंडस लगे हुए हैं लाइट के लिए और कैमेरा भी लगे हुए हैं और स्टेज पर बैठ कर को एक अ व्यक्ति तबला बजा रहे हैं ढोलक बजा रहे हैं।

ये लाइट्स लगी हुई है स्टैंड्स है लगी हुई और कईं कैमरा नीचे से लगे हुए है नीचे से लाइट की स्टैंड लगे हुए है ये फूल लगे हुए है साइड में और वहां स्टेज पर हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं दूल्हा-दुल्हन दिख रहे है।